बहुत सारे माकन दिख रहें हैं पहाड़ पर हली-हली हरे पेड़ पौधे हैं रोड कार खड़ी हुई है।

ये चार मंजिला बिल्डिंग बनती हुई दिख रही है एक साइड बिल्डिंग बन रही है एक साइड --

सफ़ेद कलर का ये मंदिर बहुत ही आकर्षित लग रहा है।

यह रथ यात्रा निकल रही है बहोत अच्छे से सजी हुई लोग बहोत उत्साहित हैं।

और शहर के बीच से ये यत्र निकल रही है अष्टविनायक का बोर्ड लगा हुआ है।